इस इमेज में यहां पर एक आयुर्वेदिक की दुकान दिखाई दे रही है और यहां पर कुछ बोर्ड भी लगे हुए हैं।

इस इमेज में यहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लग रहा है और नीचे एक कार खड़ी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर टेबल कुर्सी रखे नजर आ रहे है।

इस इमेज में यहां पर कुछ मिर्ची का ढेर दिखाई दे रहा है जहां पर एक आदमी मिर्ची साफ करता लग रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक किला दिखाई दे रहा है और बाहर कुछ पेड़ भी लगे नजर आ रहे हैं।

इमेज में यहाँ पर एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है जहाँ पर नीचे एक वैन खड़ी नजर आ रही है।

इस इमेज मे यहां पर मछलियां दिखाई दे रही है और कुछ लोग यहां पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे यहां पर पार्क दिखाई दे रहा है यहां पर कही सारे पेड़ लगे नज़र आ रहे है।

इस इमेज में यहां पर एक मॉल दिखाई दे रहा है जहां पर कई सारे लोग शॉपिंग करते नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में यहां पर एक रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है जहां पर एक बड़ा सा ब्रिज भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में यहां पर एक जंगल का दृश्य दिखाइ दे रहा है जहां पर दो लड़के खड़े बातें करते नजर आ रही हैं।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

इस इमेज में यहां पर एक फल वाला दिखाई दे रहा है जहां पर वह पैसे गिनता नजर आ रहा है।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

इस इमेज में यहां पर जिम नजर आ रही है जहां पर दो लड़के कसरत करते दिखाई दे रहे है।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

इस इमेज मे यहाँ पर एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जहां पर टेबल कुर्सी रखें नजर आ रहे हैं।

यहां पर एक कार्यालय दिखाई दे रहा है। बाहर यहां पर एक स्कूटर खड़ा नजर आ रहा है।

एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और रोड पर कुछ गाड़ियां चलती नजर आ रही हैं।

इस इमेज में यहां पर एक बड़ा सा पीकॉक का डेकोरेशन दिख रहा हैं और बोर्ड पर बिग बाजार लिखा नजर आ रहा हैं।

इस इमेज मे यहां पर कुछ स्टाल्स दिखाई दे रहे है सामने यहां पर दो तीन लोग खडे नजर आ रहे है।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

इमेज में यहां पर एक दुकान दिखाई दे रही हैं और क्रीम के दो डिब्बे भी नजर आ रहें हैं।

इस इमेज मे यहां पर एक टैंट दिखाई दे रहा है बाहर कई सारी कार खड़ी नजर आ रही है।

इस इमेज में यहाँ पर एक डॉक्टर का केबिन दिखाई दे रहा है जहाँ पर कुर्सी और ऊपर लाइटें जलती नजर आ रही हैं।